बहुत बड़ी गेराज है इस गेराज मे एक कार खड़ी हुई है। खड़ी हुई है। साइड मे भी दीवाले दिखाई दे रही है। बहुत--

यह एक पेट्रोल पम्प है पेट्रोल पम्प पर गाड़िया पेट्रोल भरवा रही है और यहा बहुत बड़ा पेट्रोल पम्प है और बहुत सारे--

व्हाइट कलर के नीले कलर के गुलाबी कलर के टावेल भी रखे हुए है महरून कलर के और बहुत सारी फ्राके भी टंगे हुए है बहुत ही सुंदर--

वह रोड गया है रोड के एक बगल काले कलर के टेम्पु खड़े हुए है।

और यहाँ पर कोई और यहाँ हरा-हरा सा दिखाई दे रहा है बहुत ही सुंदर सा दृश्य--

यहाँ एक कुर्सी लगी हुई है। पीछे वो छोटे छोटे पेड़ दिख रहे है और बड़े बड़े पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे है। यहाँ कच्चा रास्ता